ये एक स्कूल का चित्र दिखाया जा रहा है कि ये सारी लड़की गार्डन में बैठी हुईं हैंऔर योगा कर रही हैं।

ये एक बैंक का चित्रण दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे लोग इस बैंक के अंदर जा रहे है और इधर ये कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

और इस बैंक के बगल में कई सारे पेड़ --

और इस पुराने किले में कई सारे लोग घूमने जाते हैं।

ये ए -रिक्शे का चित्र दिखाया जा रहा है कि येर ए -रिक्शा खड़ा सड़क पे खड़ा हुआ है।

सारे लोग खड़े हुएँ हैं और ये ब्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति घबड़ा रहा हो।

ये एक लाज का चित्र दिखाया जा रहा है कि दो --

एक व्यक्ति एक द्वारे से गुजर रहा है। और इधर ये इधर ऐसा लग रहा हैकि इधर कुछ प्रोग्राम हो रहा हो और इधर कई अच्छी सजावट भी करवाई गई है।